शादी हो रही है किसी बहुत ही सुन्दर दिख रहा है जो कि सजा हुआ टेबल कुर्सी सब रखा हुआ है बहुत टीसी-उसी सब लगा हुआ है बहुत ही प्यारा और सुन्दर दिख रहा।

जैसे की देख सकते है लाइट सीटों से भरा हुआ जो की कोई टाकीज वाकीज भी दिख रहा है।

बहुत ही सुंदर दिख --]